यहां पर इसमें दिखा गया है कि यहां पे कुछ फंक्शन हो रहा है।

इस तस्वीर में दिखाया गया यहां पे एक ब्यूटी पार्लर का बैनर लगाओ है यहां पर फूलों से डिजाइन भी की गई--

इस तस्वीर मे दिखाया गया यहां पे एक जिम की मशीन नजर आ रही है।

जिसमें यहां पे ये फर्नीचर का काम किया जाता है।

इस पिक्चर में दिखाया गया है एच_एल_ सिटी से एक बैनर लगा हुआ है।

इस पिक्चर में दिखाया गया है यहां पे कांच के कुछ गेट भी लगाए गए हैं जिसमें--

यहां पे काम चल रहा है और यहां पे प्लंबर वुड कटर से भी अलग दिखाई पड़ रहा--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

इस तस्वीर में दिखाया गया है यहां पे एक--

इस तस्वीर में दिखाया गया हैं कि यहां पे फोर जी नामक से कुछ गेट पर लिखा गया है पीछे एक दुकान नजर आ रही है।

जिसमें पीले कलर के काउंटर भी रखे गए हैं।

उसमें अलग अलग प्रेशर फुव्वारे भी चलाए गए हैं यह एक स्विमिंग पूल पार्क जैसा लग रहा है।

पत्थरों से बना हुआ घर दिखाई पड़ रहा जिसमें एक अलग से टेंट हाउस भी लगाया गया है।

वाटिका और डेकोरेशन से किए गए फ्लावर जैसे कुछ नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में दिखाया गया है की यहां पर एक अलग अलग टाइप की जैसे कुछ--

यहां पर इसमें दिखाया गया है कि कुछ ये फैक्ट्री दिखाई गई है।